इस फोटो में कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे कुछ पेड़ः दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारे सोफे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे हवाई जहाज में बैठे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में कुछ बिजली की तारें दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में एक खेत दिखाई दे रहा है।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

फोटो में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में कुछ कारें दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में एक कुर्सी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं।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

मुझे इस फोटो में बहुत सारी फोर व्हीलर दिखाई दे रही है।